फोनपे का प्रचार हो रहा है।

सूखे पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

पीले कलर का गुंबद खड़ा हुआ है वाइट कलर की दो खूब कठपुतली बनी हुई है।

कुर्सी दिखाई दे रही है दवाइयां दिखाई दे रही है।

पीछे की तरफ एक मकान है।